यह एक शादी की तस्वीर है जिसमें फूड स्टॉल लगे हुए हैं। एक स्टॉल में पानीपुरी दिख रहा है।

बॉक्स पैकिंग करी जा रही है और ऊपर से धूप आ रही है और मशीन चालू हो रही।

आस पास काफी हरे भरे पौधे पेड़ और लगे हुए है अंदर एक में मकान टाइप का दिख रहा --

यह ब्रिज का रेलवे ब्रीच का विकास लिमिटेड निगम का बोर्ड लगा हुआ है। ब्रिज --

अ एक शादी की फोटो हैजिसमें खाने के स्टाल लगे हुुए हैं। न-आ रात हो रही है।